यहां पर बहोत बड़ा एक रेतीला टीला है जोकि आधी रेत पड़ी है और आधी रेत इधर उधर लोग ले जा रहे हैं।